दो पहिया वाहन चल रहा है।

बहुत बढ़िया है ये बहुत सुंदर नजारा है यहां पर।

कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है रात का समय है।

जो भी है बहुत सुंदर जगह है ये।

और भी पीछे ग्राउंड है बहुत अच्छा जगह है ये।

लीची बहुत ही खूबसूरत लीची है ये प्लेट पर सजा हुआ है।

और ये अच्छा बेचता है अच्छे क्वालिटी का।

कोई ए.टी.एम. --

बहुत अच्छा है बहुत सारा बैलून है ऊपर में ए.सी. लगा हुआ है।